ये कितना अच्छा ई कितना अच्छा डिजाइन बना रखा है यार वाओ देखो तो ऊपर से।

मतलब इसका ऐसा है जैसा की मतलब लगातार लगी हुई है फिर इनको न तोड़ा जा सक --

लगता है किसी चीज का सेलब्रैशन हो रहा है ऊपर भी मतलब बहोत सारे अ प्रकार की ये लगी हुई हैं।

इधर उधर भिजी हो रखे हैं लगता है कोई म प्रोग्राम --

यहाँ पर होटल युवराज का बोल्ड लगा हुआ है।

खींची गई फोटो है और यहाँ पे ये साइड पे ऐक्सीडेंट रोकने के लिए ये सीमेंट से डिंबे बना रखे हैं।

कहीं खड़ा हो रखा है रेस्टोरेंट में और लाल कलर का बैग पहन रखा है और ऊपर --

है रात को टूब लाइट जली हुई है लगता है किसी छत किसी की घर की छत का या और किसकी छत का

और ऐसी ऐसी कर के जिसपे नैंसी लिखा हुआ है।

हाँ-हाँ ये रॉयल एक गराज की दुकान है गराज वाले की दुकान है यहाँ पे एक --

तो एक हैंडसम आदमी बीयर्ड मैन की फोटो लगी हुई है और सोफे के ऊपर काला कलर का बैग रखा हुआ है सामने पीले कलर की शर्ट --

इनके गले में वासुकी नाग है और ये देवों के देव महादेव कह --

इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है बजाज फिनसेरी और जीरो परसेंट इ. एम. आइ. का बोर्ड भी लगा हुआ है टाटा स्कई का बोर्ड भी है।

यहाँ पर हमें एक बस भी दिख रही है दो बस दिख रही है।

यहाँ पर लगता है यह टीन का मकान कितना सुंदर लग रहा है और यहाँ रोड --